वॉल पे एक तस्वीर भी लगी हुई है और लाइट्स भी लगी हुई है।

और शर्ट्स भी दिखाई दे रही है शूज भी पड़े हुए हैं।

बिजली के तारें भी दिखाई दे रही हैं और यहां बोर्ड भी लगे हुए हैं।

छत पर पंख लगे हुए हैं कितनी सारी लाइट्स लगी हुई है।

यहां पर दो ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं एक बाइक दिखाई दे री--

यहां पर ये एक दुकान दिखाई दे रही है जिस दुका इस दुकान में शीशे का दरवाजा है।

यहां एक शोरूम दिखाई दे रहा है और दुकान भी दिखाई दे रही है लोग भी दिख रहे हैं गाड़ियें भी दिख रही हैं।